दिख रहा है एक मंदिर भी दिख रहा है और एक स्कूटी दिख रही है और बहुत सारे सड़क दिख रहे हैं एक गाड़ी भी दिख रही है।

ये एक आदमी भी दिख रहा है कुछ चॉकलेटे भी दिख रही है बहोत अच्छा नजारा दिख रहा है और शानदार नीचे ट्यूबलाइट भी लगी हुई है बहोत शानदार।

बहोत गजब नजारा दिखाई दे रहा है ऐसा नजारा हर किसी को दिखाई नहीं देता यहां बहोत ही शानदार दृश्य दिखाई दे रहा है सामने भी बहोत सारे अच्छे नजारे दिखाई दे रहे हैं बहोत ही शानदार --

एक ए_सी भी दिखाई दे रही है एक ट्यूबलाइट भी दिखाई दे रही है और फर्नीचर भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई दे रहे हैं और इससे शानदार नजरिया हर किसी को दिखाई नहीं दे --

और यहां पे मुझे छोटे बच्चों ड्रेस भी दिखाई दे रही है ओर भी बहुत कुछ छोटी छोटी चप्पलें भी दिखाई दे रही है और नीचे की ओर पीले पीले पता नहीं क्या दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रही है और रेटे भी दिखाई दे रही है और कमरा भी दिखाई दे रहा है बहुत शानदार --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

यहां पे नीचे एक कारपेट भी बिछा हुआ भी दिखाई दे रहा है एक छोटी बच्ची भी दिखाई दे रहा है एक महिला भी दिखाई दे रही है और यहां पे एक आदमी भी दिखाई दे रहा है और ऊपर एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है।

भारत पेट्रोलियम नाम दिखाई दे रहा है दो डब्बे दिखाई दे रहे हैं एक आदमी उसको सही कर रहा है हवा भर रहा है एक बाल्टी दिखाई दे रही है।

और भी हमें बहोत सारी चीजे दिखाई दे री है।

यहां पे खड़े हैं इसनैपा भी दिखाई दे रहा हैं फास्ट फूड भी दिखाई दे रहा है लंच भी डिनर भी दिखाई नाम भी दिख रहा है और बहोत ही शानदार तरीके से चीजे दिखाई दे रही है।

वास्तव में बहोत गजब नजर दिखाई दे रहा और ऊपर एक पंखा दो तीन घूम रहे हैं दो तीन लाइटें भी जल रही है पंखा बहोत ही स्पीड घूम रहा है।

ये मुझे बहोत सारे कलाकृति नाम भी चीजें दिखाइ दे रही राकेश ज्वेलर्स नाम भी दिखाई दे रहे है और ये केन भी दिखाई दे रही है बहोत अच्छी केन दिखाई दे रही है बहोत ही शानदार केन दिखाइ दे रही है।